नीले रंग के डिजाइन बने हुए और कुछ लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एकदम सफेद रे और एक सफेद रंग का कांच दिखाई दे रहा है।

यह एक शॉप है जहां पर लाल रंग के बड़े-बड़े पर्दे--

भी दिखाई दे रहा है और एक सफेद रंग का भालु भी--

यह एक सैलून है जहां पर दो लड़के दिखाई दे रहा है एक लड़का जो कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसने हाथ में फोन लिया है।

जो मशीन ड्रायर लिया है मुंह पे एक नीले रंग का मास्क लगाया हुआ है।

और एक काले रंग की एल एल_ई_डी टी_वी दिखाई दे रही है।

एक टेंपू जो पीले रंग का दिखाई दे रहा अंदर में एक--

जो लाल हरे और पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं और झंडे--

जो सफेद पीले नीले गुलाबी रंग के बने हुए दिखाई दे रही हैं।

यह एक स्विमिंग पूल है जहां पानी आसमानी रंग का दिखाई दे रहा है।

और कुछ लड़के जो खड़े हैं और कुछ लड़के जो पानी के अंदर दिखाई दे रहे है।

बैनर लगा जिसमें पांच लिखा हुआ है और लोहे के--

है यहां पर घरे लाल रंग की है यहां पर दो--

यह एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है यहां पर घर बना है घर के ऊपर एक लाइट --

एक घर दिखाई दे रही घर के अंदर सफेद सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

कुछआदमीबच्चे है स्विमिंग पूल के ऊपर खड़े हैं जिन्होंने--

और एक मशीन है जिसके ऊपर टायर काले रंग के रखे हुए दिखाई दे र--

और यहां पर कुछ मिट्टियां पत्थर- कंकड़ दिखाई दे रहा हैऔर ए सूखे लकड़ी का बा--

हरे रंग की स्कूटी लगी हुई है कुछ स्कूटी के ऊपर गुलदस्ता है।

ये लोहे के जाल बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक बॉक्स दिखाई दे रहा है और एक खिड़की दिखाई दे रहा है जिसके अंदर जाल लगा हुआ है।

एक कंप्यूटर जो काले रंग का एक आदमी जो नीले रंग का शर्ट पहने--

एक सफेद रंग का मशीन में कुछ देख रहा है दीवारों पेबड़े-बड़े--

एक हारमोनियम और कई सारे तबले रखे हुए हैं एक गिटार रखा हुआ है।

यह एक मंदील है जहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग--

पत्ते दिखाई दे रही है जो बेल के है कुछ थालियां नजर आ रही है इसमें फल रखे हैं।

साड़ी पहना है और एक गेट दिखाई दे रहा है जो खुला है।

और बोर्ड पर यूनिक इंटीरियर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक शिवलिंग जैसा बना है और फूलों से सजाया हुआ हैजैसे सफेद--

और बड़ी-बड़ी गेटें और दो खिड़कियां बड़ी-बड़ी दिखाई दे रही है।

कुछ आदमी आते-जाते दिख रहे हैं एक आदमी ने सफेद रंग का कुर्ता पहना है।

अब मंदील क अंदर कुछछोटी-छोटी मूर्तियां बनी हुई है।

यहां पर दो बड़ी-बड़ी गाड़ियां दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहे हैं आसमान एकदम सफेद दिख रहा है।

जिन्होंने गुलाबी रंग का कपड़ा मुंह में माक्स और एक सफेद रंग का टोपी लगाए हुए है एक आदमी जो बैठा है पत्थर तोड़ रहा है।

कुछ झोले टंगे दिखाई दे रहा है यहां पे बड़े-बड़ेसफेद रंग केबोरे दिखाई दे रहे हैं।